और बहुत सी लाइटे दिख रही है ऊपर की साइड और बहुत से लोग दिख रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए |

और ब्लैक कलर की कुर्सियां दिख रही है और फर्नीचर टाइप काउंटर दिख रहा है।

फोर व्हीलर दिख रही है व्हाइट कलर की टू व्हीलर दिख रही है।

और रेड कारपेट दिख रहा है हरा कलर का और परदे दिख रहें हैं यहाँ पर।

और पानी की बोतले पड़ी है बहुत से सोफे लगे हुए दिख रहे है।

एक टायर निचे दिख रहा है और येलो कलर की पट्टी दिख रही है नीचे की साइड |

वहाँ सामने वाइट कलर की फर्श दिख रही है और --

और एक मकान दिख रहा है सामने की साइड --

और बहुत से लोग खड़े हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग बस में चढ़ रहे हैं |

सीढ़ियां दिख रही है ऊपर के साइड खिड़कियां दिख रहे हैं पर्दे दिख रहे हैं।